यहां पर बहोत बड़ी दुकान है जिसके अंदर मिठाई भरी पड़ी--

की किनारे किनारे पेड हरी घास जैसा दिखाई दे रहा है।

किनारे खुशियां सी लगी हैं।

इसके किनारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर फैक्ट्री जैसा लग रहा है।

जिसके ऊपर मनमोहन लिखा हुआ है।

बहुत अच्छा डिजाइन भी बना रखा है।

साफ सुथरा जैसा दिखाई दे रहा है।

उसके किनारे दीवार भी खड़ी है।

जिसके अंदर बोतल दिखाई--

फूल लों से सजा --

और किनारे पे गमले भी हैं।

पारक जैसा ग्राउंड दिख रहा है।

यहां पर सर्विस जैसा दिखाई दे रहा है।